और अ यहां पर नीचे टाइलें लगी हुई हैं।

और यहां पर फ्रिज भी नजर आ रहा है ड्रॉर्स नजर आ र--

और ऊपर आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स नजर आ रहे है।

शटर नजर आ रहा है एक पेड़ नजर आ रहा है।

सामने लगा हुआ है टी_वी_एस का बोर्ड जिस पर लिखा है एस_एस_टी_वी_एस --

अंदर एक पोस्टर है जिसपे घोड़े का प्रिंट है और एक बाइक का प्रिंट है।

इस फोटो में अंडर गारमेंट्स दिख रहे है।

कुछ गिलास पड़े हैं कांच के कप पड़े हुए हैं दिल वाला एक बोर्ड लगा हुआ है।

सीढ़ियों पे लिखा हुआ है न्यूजरलैंड ।

कुछ लड़कों ने नेक्कर पहना हुआ है कुछ लड़कों ने पैंट पहना है कुछ ने कुर्ता पहना हुआ है।

इस फोटो में पेड़ दिखाई दे रहे हैं सड़क दिखाई दे रही है झूला दिखाई दे रहा है पौधे दिखाई दे रहे है।

और यहां पे स्विच बोर्ड भी दिख रहा है।

मोबाइल नंबर हैं सेवन एट सेवन सिक्स जीरो सेवन सिक्स फाइव जीरो वन ।